दीवार दिख रही है उसका नाम राजेंद्र बाल उद्यान है जो एक हरा-भरा सा दिख रहा है।

इस चित्र में तीन मूर्तियां बनी हुई है बड़ी मूर्तियां है तीन छोटी मूर्तियां हैं एक दीवार पर मूर्तियां मूर्तियां बनी हुई हैं।

झरना चल रहा है बदाल दिख रहे है।

इस चित्र में एक सभा विधानसभा जैसा दिख रहा है जिस पर बड़े-बड़े गुंबद बने हुए हैं बहुत सारे डंडे लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है जो कांच लगे है जिस पर नीले कलर के साइड में घास दिख रही है।